अ डिजाइंस किये हुए हैं और कुछ पेंटिंग में भगवान म गणेश जी बने हुए है ।

इ हूटिंग में भी कई सारे लोग खड़े है सामान रखते हुए नजर आ रहे है साइड में हरे रंग के --

कुछ गोडाउन दिखायी दे रहा है उसके आप-पास कई सारी लकड़ियां रखी गयी हैं और--

दिए गए इमेज में हमें एक मेले की फोटो दिखाई दे रही है जिसमें बच्चों के लिए --

सामने एक रेड़ी पे एक आदमी सामान बेचते हुए नजर आ रहा है।

दिए गए इमेज में हमें एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा है जो सफ़ेद रंग से पेंट है उसमें लाल रंग से लिखा हुआ है एस.एन.एस. --

सी.ओ.एल. राजी पुर गेट नंबर एक और उस --

पेंट किया हुआ है साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है सुधा पटना --

उस गेट के ऊपर लिखा हुआ है अ पुरातत्व संग्रहालय वैशाली।

अ कारे पा पार्किंग हो रखी है कारे कई रंग की है एक आदमी अ थोडा साइड पे दिखाई दे रहा है सामने कई सार --

लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जर्मनी लाल महाविद्यालय इस गेट ।

दिए गए इमेज में हमें एक कच्ची सड़क दिखाई दे रही है उस सड़क के ऊपर--

के दीवार में खड़े होके फोटो खिचाते हुए नजर आ रहे हैं इन्होने --

यह स्कूल विथ लेटर स्टैंडड लिखा हुआ नजर आ रहा है इसमें एक स्टेज है स्टेज के ऊपर चार --

दिए गए इमेज में हमें एक लकड़ी बड़े से लकड़ी के ऊपर अ छे सात अ गिलहरी ।

खड़े हुए नजर आ रहे है इनमें कुह छोटी है कुछ बड़ी है ।

साइड में ऐलोविरा का बड़ा सा पौधा लगा हुआ है।

इसमें एक बड़ा सा पेड़ है । कुछ ब्लैक कलर कुछ हरा रंग इसपे मिक्स अप दिखा दिखाया जा रहा है ।